ऐसा लग रहा है कोई जंगल है जहां लोग घूमने जा रहे हैं उनके कंधों पे बैंग टंगे हुए हैं।

पश्चिम मध्य रेलवे का बाल मंदिर स्कूल है इसमें समाज कल्याण केंद्र मस्य मध्य रेलवे लिखा हुआ है इसमें--

सिबर ब्लॉक लगा हुआ ग्राउंड है तिरंगा फहराने के लिए जगह बनी हुई--

सामने पिंक कलर और ब्लू कलर से पंडाल सजा हुआ बेसिकली किसी शादी का सीन है बहोत सारे काउंटर लगे हुए है बफर का--

टेबल लगी हुई है बहोत सारी कुर्सी लगी हुई हैं कुर्सी में व्हाइट कलर का कपड़ा चढ़ा हुआ है।

ये एक तालाब समुद्र के किनारे का सीन है इसमें पत्थर दिख रहे हैं।